काउंटर के ऊपर कुछ बेकरी आइटम रखे हुए हैं।

सभी लोग अपने अपने कार्पेट पर लेटकर योगा कर रहे।

यह एक कोई फाइव स्टार होटल का फोटो है।

गांव के पास में बहोत बड़ अच्छे से हरियाली भी है।

नदी में जहां जहां तक देखो वहां वहां तक सिर्फ पानी नजर में आ रहा है।